सबने रंगबिरंगे कपड़े पहने हैं जोकि ब्लैक कलर में है।

अपने हाथ में प्लेट पकड़े हुए हैं।

अदमी शर्ट पहना हुआ है और पैंट पहना हुआ है।

कुर्सियां है कुर्सियों के ऊपर कपड़ा लगा हुआ है वाइट कलर में।

इसके आसपास बहुत से बड़े बड़े हरे कलर के पेड़ हैं।

इसमें एक बुकस्टोर का दृश्य दिखाया गया है जिसमे बहुत सारे किताबें हैं।

दो मनुष्य बैठे हुए हैं उसमें एक औरत है एक पुरुष है।

इसमें बहुत सारे कुर्सियां है बगल में बड़े बड़े बैठने वाले सोफे हैं।

इसमें ऊपर एक ब्लू कलर का बोर्ड जैसा है जिसमें लिखा हुआ है एच डी एफ सी बैंक ।

इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ है बगल में घर है।

कछुए का शेप में है एक हाथी का शेप में है।

हरे कलर में ब्लू कलर में छोटी छोटी झाड़ियां है।

इसमें बहुत बड़े बड़े घर का दृश्य दिखाया गया है।

इसमें एक दुकान का दृश्य दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे मनुष्य हैं।

नीचे टाइल्स है लोहे के स्टेन है उसमें कपड़े टंगे हुए है।